यह एक वाइट कलर का देवाग रूम है।

फूल गेंदा का है उसके बगल में एक घर है उसमें तारी का पेड़ है।

टेबल और कुर्सी भी है।

यह एक घर है इसमें दो आदमी हैं।

इसके एक करकट का घर है नीचे घास है।

और उसके ऊपर आसमान है।

और इसमें बच्चे और बच्चियां भी हैं।

यह एक घर है घर का कलर ग्रे कलर क्रीम कलर का है।

नीचे से नली बनाया हुआ है रोड पर कुछ सामान रखे हुए हैं।

पिंक है उसमें बोर्ड है बगल अगल में गेंदा का फूल दिया हुआ है और--

और इसमें कुछ आदमी भी चल रहे हैं ऊपर आसमान है बगल में घर के बगल में टावर है।

चारों तरफ बोर्ड लगाया हुआ है सब लड़का लड़कियां आंख बंद किए हुए हैं।

बगल में गेट है गेट के बगल--

स्कूल है स्कूल में बेंच कुर्सी टेबुल लगा हुआ है उ कर ऊपर पंखा है बगल में खिरकी है बॉल भी है बोर्ड भी है।

बगल अगर टेबल कुर्सी है मॉल में कुछ सामान्य हैं।

और इसमें पंप का काला है तार--

एक है घर के ऊपर कुछ सामान्य है इसमें जिम करने वाला भी कोई--

नीचे टेबल और कुर्सी लगा हुआ है उसके बगल में --

खिड़की है खिड़की के नीचे व क्रीम कलर का--

और इसमें कुछ सामानें धरी हुई हैं और टेबल कुर्सी लगी उसकी कलर --

कॉफी कलर का है वाइट कलर का लाइट भी है।

आदमी में घड़ी और वाइट कलर ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ --

यह एक मेला है मेले में कई सारी रह के झूले लगे ऊपर समान है।

और उसके बगल में पेड़ और पौधे हैं कुछ --

और इसमें बच्चे और बच्चियां हैं जिसका ड्रेस है ब्लू और वाइट ।

आदमी में एक बाइक लगे हुए उसके बगल में--

घर है पैर और पौधे हैं और ये करकेट का है इसमें तराजू बटकारा--

बच्चे के हाथ में पेन और कलम है।

ट्रेन क्रेन का कलर वाइट और ब्लू है।

यह एक दुकान है दुकान में कई तरह के सामान है सामान कुछ पोल पर टांगा हुआ है।

यह एक फील्ड है फील्ड में बच्चे और बच्चियां हैं।

पेड़ और पौधे हैं ऊपर वाइट कलर का सामान है घर का कलर ऑरेंज है नीचे हरी-भरी घांसे हैं।

कई तरह का दुकान है दुकान के अगल-बगल घर है घर के ऊपर आसमान है आसमान--

कई तरह की तारें हैं इसमें ठेला भी लगा हुआ है सब्ज़ी --

यह एक नदी है नदी के चारों तरफ पेड़ और पौधे हैं ऊपर आसमान है नदी में पानी है पानी में वाइट --

बगल लगल में गमले में कुछ पेड़ लगाया हुआ है।

देवाल के पीछे कुछ टांगा हुआ है।

कैमरा भी है बगल अगल पेड़ और पौधे हैं ऊपर आसमान है पानी का कलर वाइट है।

और इसमें हरी भरी घांसे हैं।

लड़का कुछ काम कर रहे हैं।

घास का कलर हरा है बगल अगल घर है।

यह एक घर है।

घरे घर में कोई सामान रखी हुई हैं इस पर गेंदे हैं गेंदे का कलर हारा और वाइट है।

कुछ सामाने रखे हैं इसका कलर वाइट है।

यह एक घर है घर के चारों पट्टी पूरे घर हैं।

यह एक घर है घर के सामने पेड़ है।

कई सामान्य है ऊपर आसमान है घर का कलर --

और एक ट्रैक्टर लगा हुआ है।

कपटी धड़ा हुआ है कई तरह के पतले हैं इसमें आदमी हैं ऊपर बॉल है।

ठी और बीच में एक खंबे हैं।

यह एक जनरल स्टोर है बाहर एक--

यह एक घर है घर के ऊपर बड़ा-बड़ा बॉल लगे हुए हैं।

और इसमें ढेर सारे बच्चे और बच्चियां हैं।

और इसमें सीडी है टेबल पर कुछ सामान रखे हुए हैं और इस पर एक है रेख में कई सामान है।

यह एक रूम है रूम में--

चेंबर है नीचे गिट्टी बिछाया हुआ है।

और एक पटरी पर ट्रेन आ रही है ट्रेन का कलर हरा है ऊपर आसमान है।

यह एक नदी है।

और इसमें चारों तरफ लाइट --

दोनों साइड खिड़कियां हैं एक दरवाजे हैं दरवाजे के बगल में गमले है गमले में फूल है।

यह एक अंडर कॉनस्टेबल रूम है रूम के नीचे--

घर के बगल में एक गाड़ी है।